इस चित्र के अंदर हमें बड़ा सारा मैदान दिख रहा है मैदान के अंदर वो-हरी-हरी घासे उगी कुछ जगह घासे नहीं दिख रही उसी के पास में एक बड़ी-बड़ी सारी पिली सा भवन दिख रहा है जो पिले रंग से पूता हुआ हैं ।

चित्र के अंदर एक बच्चा लाल टी शर्ट और पिली चड्डी पहनकर पानी के पाइप को पकड़ते हुए पेड़ो में पानी डालते हुए दिख रहा है।

इन कपड़ों का रंग लाल हरा सफ़ेद रंग दिख रहा है इस पे कुछ बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जो लाल सफ़ेद दिख रहा है इसकी छत का रंग सफ़ेद दिख रहा है छत पर कुछ लाइटें दिख रही है।

आसमान का रंग सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है है जो बड़ा खबसूरत दिखाई दे रहा है।